जहां पर इस घर का ड्राइंग रूम नजर आ रहा है।

और फाइलों के साथ कुछ कंप्यूटर भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें कुछ पुरानी हवेली टाइप --

पीले रंग से पेंट किया गया है।

लड़कों ने काले रंग के पजामे पहन रखे हैं।

इस फोटो में हमें एक कुछ मेडिकल स्टोर जैसा दिखाई दे रहा हैं।

कुछ आदमी मछलियों को खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक साइड पर दो कुर्सियां पड़ी हुई दिख रही हैं।

क्लास रूम के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक बहुत बड़ी पार्क दिखाई दे रही है।

जहां पर हमें कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इसके भीतर हमें कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही हैं जिसके किनारे पर हमें कुछ बड़े बड़े--

पत्थर भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर हमें कुछ पेड़ पौधे लगे हुवे नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे पर्स घड़ी वॉच और चप्पलें दिखाई दे रही हैं।

गार्डन या पार्क दिखाई दे रहा है।